यहाँ पे एक रोड दिखाई दे रही है जिसके दोनों तरफ काफी सारी दुकाने बनी हुई नजर आ रही हैं। कुछ कपड़ों की दुकाने हैं तो कुछ खिलौने की और कुछ किराने का दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं।

ये आदमी बोतल से पानी पीता हुआ दिखाई दे रहा है। पहाड़ पे कुछ पौधे भी उगे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ पेड़ो की बेले भी लटक --

तीन वेटर खड़े हुए हैं। जिन्होंने अलग-अलग रंग के कपड़े पहन रखे हैं। एक आदमी खाना खाते हुए दिख रहा है।

उसी जगह पर किसी नदी के बीच में लड़कियों का एक पूल बना हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर काफ़ी सारे लोग नदी को पार करते हुए नज़र आ रहे है पूल के बाहर की तरफ एक झोपड़ पट्टी भी बनाई दिखाई दे रही है जो की किसी तरफ की दुकान लग रही है।

--तीन चार आदमी अपनी बाइक को ढंगाते हुए नदी पार करते हुए नज़र आ रहे है बगल में बहुत पक्का पूल बनते हुए नज़र आ रहा है।